हमारे राष्ट्र के झंडे भी लगा रखे हैं ऐसे भी झंडे लगा रखे हैं | एक औरत और दो आदमी हैं यहाँ खड़े हैं। औरत ने पन्नी ले रखी है।

एक ने पिंक कलर का सूट डाल लखा है एक ने चोकलेटी कलर का यहाँ पे एक आदमी ने फाइल ले रखी है।